यह एक दीवार घड़ी भी है।

इसमें औरंगाबाद लिखा हुआ है।

एक मैदान है। यह मैदान काफी बड़ा है। इस मैदान के किनार बड़े-बड़े घर भी है।

इस मैदान में बड़े-बड़े पेड़ भी है यह छोटी-छोटी घास भी है इस मैदान में एक बिजली के खम्बे है ।

यह एक बगीचा है यह बगीचा काफी बड़ा है इस बगीचे में बड़े-बड़े पेड़ भी हैं ।